यहाँ पर एक मकान का काम चालू है वहा पर गिट्टी का ढेर नज़र आ रहा वहा पर एक पाइप पड़ा-पड़ा नज़र आ रहा।

पीछे एक मकान दिख रहा है। उसके ऊपर सोलर प्लेट लगी हुई है। उसके पीछे पड़दे दिख रहे। वहा पर एक झोपड़ी बनाई गयी है और वहा पर कुछ बड़े पेड़ दिख रहे है।

और एक मैदान दिख रहा है वहां पर कुछ घास वास कुछ मिट्टी दिखाई दे रही है वहां एक दीवार दिखाई दे रही है उसके ऊपर एक एंगल लगा हुआ है वहां पर एक लाइट दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक आदमी दिख रहा है जिसके आगे एक जालि दिखाई दे रही है। जालि के पीछे दो पंछी दिखाई दे रहे हे। उनके नीचे एक --

यहाँ पर एक दुकान दिख रही है जहा पर एक टेबल लगी है टेबल के ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है पीछे की तरफ़ बरनि और एक स्टील का डिब्बा दिख रहा है पीछे की तरफ एक फ्रीजर दिख रहा है।

आगे की तरफ बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है वहा सूरज भी दिख रहा है वह बड़े बड़े टावर भी दिखाई दे रहे वहा बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर कुछ सलाके नजर आ रही है वह पर रस्ता दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक तालाब दिख रहा है जिसके अंदर बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है उस पानी में दो बदक तैरते नजर आ रहे।

यहां पर एक गाय नजर आ रही है उसको दोर से बांधा गया है वहां पर एक टोकरा रखा नजर आ रहा है। उसके अंदर घास दाली गई--

एंगल लगा हुआ एक पुल दिखाई दे रहा है वहां पर कुछ घास निकले नजर आ रही है वहां एक बेंच डाली गई है वहां से कुछ लोग जाते नजर आ रहे है पीछे की तरफ दो पुल दिखाई दे रहे है वहा पर--